बाहर बहुत बड़े बड़े मैदान दिख रहे हैं।

पेड़ के नीचे डस्टबिन रखी है और चांद बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।

जो कांच के बर्तन भी दिख रहे हैं जिसमें फूल लगे हैं।

जहां पे आगे की तरफ टाइल्स वगैरा रखे हैं।

इस तस्वीर में मार्केट का नजारा दिख रहा है।

तस्वीर में बी_डी_डब्लू_आर_एल_डी स्कूल के फंक्शन का मंच दिख रहा है।

ऑटो खड़ा है कुछ रिक्शा खड़ा है कुछ बाइक खड़े हुए हैं।

तस्वीर में मस्जिद के अंदर का नजारा दिखाया गया है।

आगे की तरफ ट्रैक्टर के आगे एक आदमी ट्रैक्टर साफ कर रहा है।